और झंडा भी लगा दिखाई दे रहा है।

यहाँ पे एक हम होटल देख रहे हैं जिसमें कि लाल रंग की चेयर पड़ी हुई हैं।

और एक मंच रखी हुई है ढा अ अ होटल में बहुत सारे व्यक्ति खाना खा रहे हैं।

यहाँ पे हमें एक स्टेज देख रहे है स्टेज पे बहोत सारे लोग दिखाई दे रही दे रहे है।

यहाँ पे हमें एक रूम दिखाई दे रहा है रूम में बेड पड़ी हुई है बेड पर तकिया --

यहाँ पे हम एक घर जैसा देख रहे हैं पीछे ए वाइट कलर का पेंट है।

यहाँ पे हम एक फिल्ड देख रहे हैं जिसमें कि बहुत सारी औरतें पूजा करते हुए नजर आ रही हैं पीछे की ओर पेर लगे हुए हैं।

यहाँ पे हम एक दुकान देख रहे हैं दुकान में कपड़े रखे हुए दिखाई दे रहे हैं नीले पीले गुलाबी हरे रंग के।

यहां पे हमें एक मंदिर बना हुआ नजर आ रहा है और--

नीचे हमें घास दिखाई दे रही है जोकि हरी भरी घास है।

एक कार भी खड़ी दिखाई दे रही है।

बस खड़ी हुई दिखाई दे रही है।

चीने बने हुए दिखाई दे रहे हैं।

का बैनर लगा हुआ है और यहाँ पे कुछ व्यक्ति खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं एक व्यक्ति--

पीछे बोर्ड लगा हुआ है पीछे गुब्बारे भी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं और बालों में गजरा लगा रखा है।

यहां पर हमें एक लड़का दिखाई दे रहा है जो कि कोट पैंट पहने हुए है ब्लैक कलर के जूते पहने हुए है।

पर आस पास में कोई भी नजर नहीं आ रहा है।